इन्होने पैरो में स्केट सू पहना हुआ है।

बहोत सारे मिट्टी के बर्तन और चिली मिटी के बर्तन रखे हुए है।

जिसपे एक्सिस बैंक का बैनर लगा हुआ हैं।